दुकान के अंदर बहोत सारे लोहे के छड़ है।

इस दृश्य में एक रोड है।

पेड़ के ऊपर कुछ पंधियां हैं।

रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे टेबल हैं।

टेबुल के बगल में बहोत सारे कुर्सियां रखी हुई है।

यहां छपरा है छपरा के नीचे दो लोहे के डंटे लगे हुए हैं।

डब्बे के अंदर कुछ हल्का सा पौधा ल रखा हुआ है।

यहां पे एक मूर्ति है राणा प्रताप का।

बहुत सारे आदमी है और कुछ महिला है बच्ची भी है।

इसपे बहुत सारे साइकिल ट्रैक्टर बस कार का चित्र बना हुआ है।

बस के अंदर बहोत सारे सीट लगे हुए है।

एक व्यक्ति खड़ा है जिसके हाथ में एक रस्सी है।

यहां पे बहुत सारे मुर्गी लोगों का चारा है।

एक यहां अलमारी में ऐनक लगा हुआ है।

पीछे में बहुत सारे तार लगे हुए हैं।

यहां बहुत सारे घास हैं।

आसमान है धूप की रोशनी आ रही है।

इस दृश्य में एक हाल है।

यहां एक व्यक्ति है जो टोपी पहना हुआ है लाल रंग का।

बगल में एक स्कूटी पार्क किया हुआ है जो ऑरेंज रंग का है।

यहां एक लोहे का डंडा है जिसके ऊपर बहोत सारे तार लपटा हुआ हैं।

हरे रंग के हैं और कुछ पीले रंग के हैं।

यहां बहोत सारे व्यक्ति हैं महिला है।

यहां एक बच्चा है जो झूला के ऊपर खड़ा है।

बीच में तीन व्यक्ति हैं और पेड़ है।

घर के अंदर बहुत सारे काले रंग के बॉक्ससे रखे हुए हैं।

यहां पे कुछ उजले रंग के हैं और कुछ हरे रंग के डब्बे रखे हुए हैं।

इस दृश्य में एक दुकान है।

के बगल में एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ--